कार है कार का शीशे का कलर ब्लैक है।

रूम है रूम का कलर वाइट है दरवाजे का कलर वाइट है पर्दा ब्राउन है।

घर है घर का कलर नीला है बॉर्डर ब्लू है बोर्ड है बोर्ड का कलर ब्लू है।

पिंक रेड है सोफा है सोफा का कलर ब्राउन है कुशन है।

एक लड़की है येलो कलर के चेयर पे बैठी हुई है टेबल है टेबल का कलर ऑरेंज है ग्रीन है।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

बोर्डेर रेड है बोहोत सारे टायर रखे हुए है टायर का कलर ब्लैक है।

टॉयलेट से हुआ है कलर वाइट है बास्वेसन है ।

चस्मा लगाया है शर्ट के जेब में पेन है शूज है शूज का कलर ब्लैक है।

एक आदमी है चेयर पे बैठा हुआ है दुकान के बाहर बहुत सारे--

मार्केट रोड है एक स्कूटी है स्कूटी पे दो लड़के बेठे हुए है।

डब्बे रखे हुए हैं डब्बों का कलर ब्राउन है टी_वी है टी_वी का कलर --

ब्लैक है बैग है बैग का कलर ब्राउन है रेड है।

गोबी है गोबी का कलर वाइट है पतीले में सब्जी रखा हुआ है।

रूम है रूम का कलर ग्रीन है व्हाईट है फर्श व्हाईट है कालीन है।

व्हाइट कलर का लाइट लगा हुआ है बहोत सारे टॉयलेट सीट है कलर व्हाइट है।

शीशा है शीशा का कलर व्हाइट है बास बेसन है।